और कुछ फूल खरीदने वाले व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं ख् पास में एक लकड़ी की बून छोटी टेबल दिखाई दे रही है।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं गाडियां दिखाई दे रही है सामने मुझे एक दीवार दिखाई दे रही है जिसपे लोहे का जंगला लगा हुआ है ब्लैक कलर किया हुआ है।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

और इसके अंदर एक झुमरा अभी दिखाई दे रहा है कुछ महिलाएं और व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं एक गार्ड भी दिखाई दे रहा है।

खिलौने दिखाई दे रहे हैं और बच्चों की गाड़ियां छोटी छोटी दिखाई दे रही जो प्लास्टिक की बनी हुई हैं और कुछ महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं जो कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

और पास में मुझे कुछ सरिये दिखाई दे रहे हैं और कुछ कंक्रीट का मसाला दिखाई दे रहा है।

और पास में कुछ बच्चों के खेलने वाले खिलौने दिखाई दे रहे इस दुकान के अंदर एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

और इसके आगे कुछ पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं छोटे-छोटे सड़क दिखाई दे रही हैं इसके आगे पोस्टर भी लगा हैं इसमें कुछ नाम लिखे हुए है।

पास में एक प्लास्टिक की कुर्सी दिखाई दे रही है और साइडो में मुझे बारियों के अंदर परदे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे कुछ स्कूटियाँ दिखाई दे रही है जो किसी रूम के अंदर है पास में मुझे एक --

लकड़ी की टेबले और कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है और गमलो के अंदर पौधे दिखाई दे रहे हैं पेड़ दिखाई दे रहे हैं कांच का एक गेट भी दिखाई दे रहा है।

लोहे की कुछ फरमे जैसे हैं और हाथों में पांवड़े हैं और ग्रिप में ला रहे हैं और मुझे इसे साथ में कुछ सरिए के गांठे और सरिए गांठ के कुछ --